ट्रक का दो चक्का दिखाई दे रहा है।

एक घर दिखाई दे रहा है।

इस खेत के पास दो और घर हैं उन दोनों घरों में से एक घर पूछाड़ा किया हुआ है।

इस मंदिर के बाहर एक फोटो है जिसमें हार चढ़ा हुआ है।

जिसपे ताला लगाया गया है उसका रंग भूरा है।

उन बैलूनों का रंग गुलाबी तथा सफेद है।

यहां पे कुछ आदमी तथा औरत कुर्सी पे बैठे हुए हैं।

यहां पे बहुत सारे तरह तरह के मिक्सी रखे हुए हैं।

इस आदमी के हाथ में एक बोतल है।

इस आदमी ने काला रंग का शर्ट पहना हुआ है।

इस स्टेट बैंक में बहुत सारे लोग आए हुए हैं।

बाइक तथा साइकल रखे हुए है।

यहां बच्चों के भी तरह तरह कपड़े टंगे हुए हैं।

यहां पे कुछ अन्य गाड़ियां भी रखे हुए हैं।

के साथ साथ टेबल भी रखे हुए है।

यहां पे बहुत सारे मंदिर दिखाई दे रहे हैं।

मंदिर के पास एक बहुत बड़ा पेड़ है।

नीचे जमीन में नया लोहा का बहोत सारा नया नया सामान रखा गया है।

सभी आदमी इस दृश्य का आनंद उठा रहे हैं।